दे रही है सड़क दिखाई दे रही है बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है सामने काफी सारी दुकान दिखाई दे रही हैं एक बैंक दिखाई दे रही है बादल दिखाई दे रहे हैं कई सारे लाइट की डोरियाँ दिखाई --

अं आस-पास भी कई सारे बड़े-बड़े पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं नदी का पानी हरा-हरा सा भी दिखाई दे रहा है सड़क दिखाई दे रही है।

इस चित्र में सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसपे देशी रसोई ढाबा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है| काफी अच्छी डिशें भी दिखाई दे रही है कई सारे सामान दिखाई दे रहे हैं।

मूर्ति भी दिखाई दे रही है सड़क दिखाई दे रही है कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है।

बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं इंडियन ऑयल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

गेट लगी हुई दिखाई दे रहे हैं काफी अच्छी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस चित्र में कई सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

उम्म काफी अच्छे से सजी हुई दिखाई दे रही है आसपास भी कई सारे दुकाने दिखाई दे रहे हैं पास में कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही है।